और वो जंगल स अ के बीच में बहती हुई दिखाई दे रही है और यहां पर जंगल दिखाई दे रहा है। बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं जो --

और ये ये और क्या बोलते हैं सिल्वर कलर का कुछ उसके अअ नीचे से बनाया गया है।

ऑफिस दिखाई दे रहा है जहां पर ये पूरी कुछ अअ यहां पर तस्वीरे लगी दिखाई दे रही है।

ये मुझे एक जिम दिखाई दे रहा है। जिम में यहां पर ट्रेड मशीन और कुछ एक्सरसाइज करने की मशीने रखी दिखाई दे रही है।

ये मुझे एक अअअ अम्म्म टीन का शेड अम बना हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाहर कुछ यहां पर गार्डन दिखाई दे रहा है।

अम्म्म यूँही दिखाई दे रही है। नीचे टूल्स बॉक्स पड़े हुए दिखाई दे रहे है और यहां पर कुछ --